की इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक तालाब का चित्र है और ये एक नदी भी है| यहाँ पे और काफी लोगों की भी भीड़ है और यहाँ पे एक हवाई जहाज भी है।

और काफी फल भी हैं और देखने मे बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँं पे काफी लोगो की भीड़ दिख रही --

और उसके ऊपर से एक पुल भी निकला हुआ है जो देखने में भी बहोत ही बड़ा लग रहा है पुल और देखने में भी बहुत सुंदर।

अजान भी पढ़ रहे है यहाँ पे और ये मजहार देखने में बोहोत ही अच्छी दिख रही है।

इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक पारक का चित्र है और ये पारक भी काफी सुंदर लग रही है और यहाँ पे काफी झूलें --

और काफी झाँसी से उरई उरई से झाँसी चलती हैं और इसके बस के पीछे देखो कितने पेड़ पौधे भी हैं जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

और ये गाड़ी का स्टैंड है और काफ़ी लोग भी खड़े हुऐ है यहाँ पे।